पीछे एक छोटा सा घर बना हुआ है जिसमे झालर लटका--

सामने दो बस खड़ी हुई है एक लाल कलर की एक गुलाबी कलर की --

अ ऑरेंज कलर की पट्टी है जिसपे आई_डी_बी_आई बैंक लिखा हुआ है सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

बहता हुआ हम्म दिख रहा है जो की बहुत तेजी से पत्थरो के बीच में से होता हुआ गिर रहा है।

सामने एक दुकान है अ जिसमे रैक बनी हुई है रैक में एक तरफ चॉकलेट मैगी किंडर जॉय --

अ सी_जी_एल करके भी कुछ लिखा हुआ है वेल्यू एंड वैरायटी --